नीचे बहोत व ज्यादा मात्रा में स्टूले पड़ी है स्टील की--

और इस बिल्डिंग के आगे बहुत सारे आदमी खड़े है इधर साइड मे मोटरसाइकिले खड़ी है।